ऊपर एक बलब लगा है बाहर जो सफेद लाइट दे रहा है।

शेल्फ में बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

नीचे दो स्टेरिंग रखे हुए हैं वो भी काले रंग के है।

बेड पे काले रंग की चादर बिछी है और उसके ऊपर लाल रंग का कंबल पड़ा है।

सेवन फाइव जीरो ऐट सेवन सिक्स टू --

यह एक कमरा है कमरे में दो ऊंचे ऊंचे स्ट्रेचर लगे हुए हैं।

एक कुर्सी पड़ी है जो कुर्सी है पीछे से हरे रंग की है और आगे से ब्लू रंग की है।

नीचे कुछ लिखा हुआ है जैसे पैंतालीस सौ टन और और चीजें--

साइड में एक बहोत बड़ी बोट सी लगी हुई है।

यहां पे बहुत सारे रूम बन रहे हैं शायद से और बहुत सारी ईंटे--

जिसमें एक कंप्यूटर है एक मॉनिटर है जो ऑन है साइड में कुछ फाइल पड़ी हुई हैं।

दूसरी तरफ लड़कियां कुछ अपना समान देख रही हैं।

यह कोई गैरेज सा लग रहा है। जहां पे तीन से चार गाड़ियां खड़ी है।

और नीचे एक वाइट रंग का स्टीकर भी लगा है।